एक साथ लगे हुए है अच्छे नहीं दिख रहे है ये हार्डवेयर दुकान के ऊपर गोल्ड मैडल लिखा हुआ--

बहुत भीड़ है यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पेड़ है --

जैसे कि हम यहां देख पा रहे समय दिन की हो रही हैं ये एक साइकिल दुकान है।

जैसे की हम यहाँ देख पा रहे हैं यह एक मंच है जहां पे सिंहासन लगी हुई है उस--

गुलाब भी लगी हुई है नकली और उसके मंच के नीचे फ्लोर बी लगी हुई है यहाँ पे स्टम्प भी लगाया गया है--

उसके सामने रेलिंग भी है उसके जस्ट पीछे छोटी सी तालाब भी है उसके--

जैसे कि मैं देख पा रहे हैं। समय रात का हो रहा है। या रोड पर बहोत भीड़ है।

जहां पर बहुत तदात पर भीड़ भी है इसके ऊपर बहुत सारे दुकान भी लगे हुए है।

तबीर नितिका की नाम भी लिखी हुई है ।

इन्‍होंने चश्‍मा भी पहना हुआ है अ जूता भी पहना हुआ है अ इसके जस्‍ट सामने बहुत सारे पेड़-पौधे है ऐं ।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। पहाड़ भी है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।

इसके सामने वो छोटे छोटे घास भी है झाड़ी भी है पत्थरों का समूह भी है।

जैसा की मैं यहाँ देख पा रहा हूँ समय रात का हो रही है यहाँ एक होटल है जिसका नाम --

यह एक छोटे से घर हैं यहां हरा रंग की की गई है।

यहा बहुत सारे बोरे रखे हुए जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है।

यहाँ डेसबीन भी रखा हुआ है यहाँ पे नीचे फ्लूर भी रखी हुई है टाइल्स भी लगा हुआ है।

यहाँ पर ये मगरमच्छ बोहोत खूंखार दिख रहा है उसके दांत भी दिख रहा है उस--

उसके जस्‍ट आगे पानी भरी हुई है उसके बगल मे घास-फूस भी है यह दि‍खने में डरावना लग रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये एक दुकान की तस्‍वीर है जहां पर लाल रंग की सारी ऑरेन्‍ज रंग की सारी सब--

अ बहुत सारे बच्चे बैठ के कम्प्यूटर में कार्य कर रहे हैं।

यहाँ बहुत भीड़ है सुंदर लग रहा है देखने में ऐ दीवार पे रिवन भी लगी हुई है अ --

और दूसरे बच्चों को कुछ सीखा रहा है यहां पर एक बच्चा वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है।

इसके अ आमने-सामने अ बहुत सारे घर बने हुए हैं जो सुंदर लग रहे देखने--

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

जो मैन्यू कार्ट का है यहाँ ऊपर पावर बिरयानी भी रखा हुआ लिखा हुआ है इसके--

बोहोत बरे-बरे पेड़-पौधे भी हैं बोहोत बरे-बरे चट्टान भी हैं --